सड़क है बहुत सारी बाइक और स्कूटी भी दिख रही है।

एक बड़ा फोर व्हीलर गाड़ी भी दिख रहा है।

हरी हरी घांस भी दिख रही है।